बहोत सारे रैक बने हुए नजर आ रहे हैं।

बड़े अक्षरों में वेज इनर लिखा हुआ नजर आ रहा है।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

गुरुद्वारा की पालकी सजी हुई नजर आ रही है।

छोटे छोटे कैक्टस दिखाई दे रहे हैं।

पीछे एक झूला दिखाई दे रहा है जिसपे कुछ लोग बैठे हुए नजर आ रहे हैं।

छोटे से हरे रंग का बोर्ड लगा हुआ है।

अगल बगल चारों तरफ बहोत सारे वृक्ष उगे हुए नजर आ रहे हैं।

यहाँ पर कोई फंक्शन होता हुआ नजर आ रहा है।

यहां पर एक लकड़ी का बना हुआ चेयर नजर आ रहा है।

यहां पर हमें कुछ लोग मछली बेचते हुए नजर आ रहे हैं।

कुछ क्यू_आर लगे हुए देख सकते हैं और कुछ बने हुए देख सकते हैं।

यहां पे हम एक डाइवर्जन रास्ता देख सकते हैं।

सीलिंग पर बहोत सारी लाइट्स लगी हुई नजर आ रही है।

टोकरी में बहुत सारे गेंदे के फूल रखे हुए--

एक पर्दा हमें नजर आ रहा है।

इंडिया का झंडा लगा हुआ नजर आ रहा है।

यहां पर काफी सारे सॉलिड रोड्स रखे हुए नजर आ रहे हैं।

यहां पर कई सारे महिलाएं नजर आ रही हैं।

सीलिंग पर बहुत ही सुंदर डिजाइन बने हुए हैं और बहुत सारे लाइट्स लगे हुए हैं।

एक बड़ा स्तंभ बना हुआ नजर आ रहा है।

पीछे बड़े बड़े मिट्टी के गमले पर व्हाइट रंग का पेंट किया है जिसमें छोटे छोटे पौधे हैं।

यहां पर बड़े बड़े बैनर लगे हुए हम देख सकते हैं।

सरफेस पर टाइल्स का प्रयोग किया गया है।

बड़े से चमकीले बोर्ड पर एयरटेल फोर जी लिखा हुआ नजर आ रहा है।

बगल में हमें एक ए_टी_एम नजर आ रहा है।

यहां पर हम टेरिस फार्मिंग होते हुए देख सकते हैं।

साफ रास्ता बना हुआ नजर आ रहा है।

कुछ युवक खड़े नजर आ रहे हैं।

यहां पे एक बड़ा सा स्तंप या मीनार जैसा बना हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां पर बहोत सारे लकड़ी के चेयर बने हुए हैं।